दिए गई तस्वीर में हमको दिखाई देने को मिलता है गोल्डन पगोड़ा माउंट टू का एक मॉनेस्ट्री वहां में--

केला का पेड़ भी दिखाई देने को मिलता है सामने में एक इलेक्ट्रिक पोस भी है उसके सामने एक गाड़ी रखा हुआ है।

बनाया हुआ है उसके सामने में ही एक डस्टबिन बनाया हुआ है इसमें कुछ खाने पीने के बाद उसके अंदर रखने के लिए और बढ़िया से--

नवोदय विद्यालय का एक कमेटी हॉल है वहां में हमको मैप सेल भी देखने को मिलता है वहां में आर्मी लोग लोग के लिए देखने के लिए वहां में--

उसके सामने एक डस्टबिन है वॉल में बड़ा सा पेंटिंग है एक।

दिए गए तस्वीर एक सुंदर सा और बरा सा घर है।

दीए गई तस्वीर में हमको दिखाई देता है वहा ए एक दुकान है छोटा था दुकान का एक अंदर से खींचा हुआ है फोटो जो --

ये पेड़ के अंदर आदमी लोग बैठा हुआ है कोई कोई बाइसाइकिल ला के--